बिल्डिंग के एंट्री गेट में हमें एक ड्राइंग बनाई हुई दिख रही है।

नदी के अगल बगल में बहोत सारे बड़े बड़े चट्टान है।

इस तस्वीर में हमें एक समुद्र दिख रहा है।

नाव के बगल में एक लोहा है जिसमें फोर ए डैश लिखा है।

मंदिर के बाहर कई सारे फोटो है।

मनुष्य के आगे एक वॉल है।

इस जिम में हमें वर्क आउट करने के कई सारे मासिंस दिख रहे हैं।

ये एक गराज की तस्वीर है।

मनुष्य के पीछे एक कार्टून बॉक्स है ।

बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा है।

नदी के चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हैं।

मनुष्य के पीछे बहोत सारी साइकल रखी है।

झोंपड़ियों के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

बैनर के बगल में कुर्सियां और एक बड़ा बॉक्स रखा है।

ये एक बैंक की तस्वीर है।

इस तस्वीर में हमें एक घर दिख रहा है।

प्लेटफार्म के बगल में हमें एक दीवार है।

दीवार के बगल में कई सारे घर है।

घर के बाहर एक डिश लगा है।